और यहां पे स्विच बोर्ड है जो यहां पे चालू है।

चालू हैं लाइट हैं वाइट कलर के लाइट चालू नजर आ रहे हैं।

ये एक देवी नजर आ रही है उसके बाजू में छोटे देवियां है जो देवी के हाथ है।

में और इसके बाजू छाड़ हैं के बड़े बड़े हरियाली और वो कॉलेज या फिर स्कूल नजर आ रहा है।

यहां पे लोग बैठे हुए हैं जो बसे नजर आ रहा है लोग अपने-अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं।

यहां पे अगरबत्ती नजर आ रही है और एक मोमबत्ती नजर आ रही है एक--

लोग लेना चाहते है यहां पे दो लोग खड़े हुए हैं और एक आदमी जो है।

और यहां पर वो ग्लास के कांच के ग्लास इस्तेमाल हो रहें हैं सामने है ।